और एक टोपी पहनी हुई है काले कलर की।

इसमें एक साउंड सिस्टम रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और दो बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

और एक साइड को ढाबे का किचन दिखाइ दे रहा है।

और साइड में एक सोफा लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

जिसमे भूतेश्वर गैरेज लिखा हुआ दिख रहा है।

बट आदमी के सामने एक मशीन रखी हुई दिखाई दे रही है।

एक ने येलो टी-शर्ट एक ने व्हाइट दु और एक ने ग्रीन कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है।

और शीशे के सामने एक एक कुर्सी रखी हुई दिखाई दे रही है।

एक नीले कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है जिस पर मेहमूद टेलर्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और अंदर की ओर बहोत सारे सूट टंगे हुए दिखाई दे रहे है।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

जिसमें चार लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।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

बिल्डिंग के साइड में एक गार्डन दिखाई दे रहा है।

इसके अंदर बहुत सारा सामान रखा हुआ देखा जा सकता है।

और बाहर के साइड एक स्टूल रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और अंदर दो आदमी दिखाई दे रहे हैं एक ने पीले कलर का कुर्ता पहना हुआ है।

और दो गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

गेट के ऊपर एक मूर्ति रखी हुई दिखाई दे रही है।

और साइड में इकट्ठा कर हुआ रेता दिखाई दे रहा है।

एक पानी गिरता हुआ फव्वारा दिखाई दे रहा है।

और एक बच्चा दिखाई दे रहा है जो सीढ़ी चढ़ रहा है।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

जिसमें नारी शृंगार लिखा हुआ है।

और अंदर की ओर एक पुतला खड़ा हुआ है जिसने लाल कलर की फ्रॉक पहनी हुई है।

जिसमें दो ऑटो खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

पेट्रोल पंप के दूसरे साईड एक ट्रक और एक गाड़ी खड़ी हुई है।

यहां एक मॉल देखा जा सकता है।

इसमें वी टू लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे गुड्डे रखे हुए दिखाई दे रहे है।

और साइड में एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक जनरेटर रखा हुआ दिखाई दे रहा है जिसका कलर हरा है।

और एक ड्रिलिंग मशीन रखी हुई दिखाई दे रही है।

एक सेंटर में एक गाड़ी दिखाई दे रही है जिसका रंग सफेद है।

एक घोड़ा रखा हुआ दिखाई दे रहा है प्लास्टिक का।